और इसमें शेटर लगाया गया है बंद करने के लिए और खोलने के लिए।

और दुकान में अभी एक भी आदमी नहीं है।

ये एक शादी का स्टेज का फोटो है जहाँ पर स्वयंवर होने है।

ये एक जंगल का फोटो है जहाँ पर बहोत सारे बड़े-बड़े और पुराने पेड़ लगे हुए हैं।

और उसके बाद छोटा-छोटा दिल भी है।

चढ़ा हुआ ही है और यहाँ पर दो आदमी भी --

अभी रात में भी खुला हुआ है और यहाँ पर एक ट्रक पेट्रोल लेने के लिए आया हुआ है।

ये एक हॉस्पिटल का फोटो है जो की हॉस्पिटल तो बहुत छोटा है।

प्रेस कर रहा है।

जिसका नंबर है टी.एस. जीरो नो इ.के. ।

ये एक घर का फोटो है जो की घर बहुत बड़ा है बहुत आलीशान महल है।